बहुत सारे बच्चे अपने मेहनत से प्रोजेक्ट बना रहे हैं।

बगल में रोड क्रॉस किया गया है ।

अगल-बगल बहुत सारे गाड़ी रोड पर खड़े हैं।

यहाँ लोग सामान लेने --

यहाँ बहुत सारे छात्र इस विश्वविद्यालय मे पढ़ने के लिए आते हैं।

यहाँ प्रेशर मशीन भी रखे हुए हैं।

यह एक पहाड़ है। इस पहाड़ के चारों ओर उ ग्रिल से घेरा गया है ।

यहाँ सोफा रखा गया है ।